स्टील का उसके आगे दो व्यक्ति नजर आ रहे है एक्चुअली खाना परोस रहे है।

तथा उसके पीछे पेड़ भी नज़र आ रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

तथा नीचे का जीना दिखाई दे रहा है खिड़की नजर आ रही है शीशे की--

पौधे नजर आ रहे है और एक भवन दिखाई दे रहा है जो जिसकी दो टंकिया नजर आ रही है।

दो महिलाये आगे दिखाई दे रही है उनके पीछे--

अगल वगल पेड़ दिखाई दे रहे है घासे नजर आ रहे है।

तथा कुछ लोग बाइक से आ भी जा भी रहे है कुछ लोग ब बस के --

मछलियाँ है तथा बगल में टोकरी है।

पौधे दिखाई दे रहे है बीच में बड़ा पौधा नज़र आ रहा है।